में हमे एक रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है रेस्टोरेंट बहोत ही खूबसूरत लग रहा है इस की डिज़ाइन बहोत अच्छे से की गयी है साथ ही साथ हमे कई पौंधे और गमले भी देखने को मिल रहे है।

दृश में हमे पहाड़ दिखाई दे रहा है और यहा पर पहाड़ के नीचे से एक नदी बेहती हुई नजर आ रही है नदी के ऊपर हमे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

दृश में हमे संगीत कक्ष देखने को मिल रहे है यहा पर हमे संगीत के कई यंत्र भी देखने को मिल रहे है यह यंत्र बहुत ही खूबसूरतीसे बनाए गए है।

साथ ही साथ यहा पर एक शटर बंद किया हुआ दुकान भी देखने को मिल रहा है दूर देखने पर हमे कई बिल्डिंग नजर आ रहे है पेड़ भी दिख --

आसपास हमे कई घर देखने को मिल रहे है साथ ही साथ यहा पर पेड़ और घास भी दिख रहे है।

दृश में हमे एक मंदिर देखने को मिल रहा है हाला की ये तस्वीर मंदिर से बाहर से ली गई है यहा पर हमे कई झंडे भी लटके हुए नजर आ रहे है।

अ दृश्य किसी मूवी थिएटर का लग रहा है पर्दे पर हमें कुछ दिखाते हुए नजर आ रहा है साथ ही साथ यहां पर लाइन से सीट्स लगी हुई है।

ऑफिस के बाहर से दी गई है और अन्य कई बोर्ड भी देखने को मिल रहे है यहा पर हमे बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे है जो की घने है दूर कई बिल्डिंग है।

द्रीश्य सिनेमा यहा पर हमे बहुत बड़ा पर्दा देखने को मिल रहा है साथी ही साथ यहा पर हमे लाइन से बहुत सारी कुर्सिया देखने को --

दिखने में काफी खूबसूरत है पर्दा यहा पर हमे लाल रंग का दिख रहा है साथ ही साथ कूर्सिया लाइन से लगाई गई है और ये सारी की सारी लाल रंग की है।

साथ ही साथ यहा पर हमे वॉशरूम भी देखने को मिलता है और यहा का जमीन भी सुंदर--

ईस दृश्य मे हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की एक कैफै टेरिया की है यहा पर हमे बहुत सारे प्लांट्स नजर आ रहे है।

दृश्य पोस्ट ऑफिस का है यहा पर हमे एक ने जो की कार्यलाय मे बात करता हुआ नजर आ रहा है अंदर कई लोग नजर आ रहे--

साथ ही साथ यहा पर कुर्सिया लाइन से लगी हुई है सभी कुर्सिओ पर नंबर लिखे गये है।

इस दृश्य मे हमे एक इमारत दिखाई दे रहा है जो की दो मिल मंज़िल--